राम हरे जय जय प्रभु जय--

मुझे इस चित्र में एक बाबा रोड लाइंस की दुकान दिख रही है।

राम हरी जय जय प्रभु जय सिया--

सामने से एक रेलगाड़ी भी जाती हुई नजर आ रही है।

जय जय प्रभु जय सिया राम ह--

जय जय प्रभु जय सिया--

जय जय प्रभु जय सिया--